और पूरा शांत एरिया लग रहा है जंगली क्षेत्र है।

यह एक स्कूल या कॉलेज कैंपस टाइप में लग रहा है।